प्लेट और टिशू रखी हुई हैं यहां पे पानी का गिलास भी रखा हुआ है सामने एक एल_ई_डी लगाई गई है।

एक आदमी खड़ा होगा इहा पे बहुत सारी चीज रखी हुई है जैसे अंगूठी--

पान के चलते यहां पे बहोत सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

यहां पे एक लैपटॉप रखा हुआ एक फाइल रखी हुई है।

यहां बिल्डिंग बनी हुई है इसका नाम है शुभम सामने दो मूर्ति रखी हुई है लेडिस कि यहां पे झंडा लगा हुआ है।

यहां पे डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे रखे हुए हैं सामने बहुत सारी --

यहां पे बहोत सारे बलून उसे डिजाइन किया गया है बाहर बहोत सारे लड़के बैठे हुए हैं।

यहां पे घर बना हुआ है जिस पर सफेद कलर से पेंट किया गया है।

यह समारोह की तस्वीर है यहां पे बहोत सारे आदमी खड़े हुए--

यहां पे हर सामान मिलता है।

यहां पे बिल्डिंग बनी हुई है यहां पे पेड़ लगे हुए यहां पे बहोत सारे --

ये एक गुरुद्वारे की तस्वीर सामने एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे झोपड़ी सी बनाई गई है यहां पे एक पेड़ बोया यहां पे बोहोत सारी ईंटें --